यह कोई समारोह जैसा लग रहा है।

और ये हमें लग रहा है कि कोई मोटर पार्ट्स का दुकान है आगे मोबिल का भी डिब्बा रखा हुआ है।

और एक सीढ़ी भी दिख रहा हैं मकान पे चढ़ने--

एक शादी का मंडप है मंडप में फोटो खींच रहा है।